यह मजदूर काम कर रहे है पिकाबू से लोड कर रहे है कट्टो से समान डाल रहे हैं उसमें दो आदमी डाल रहे है एक अंदर जचा रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट है यहां लोग खाना खाने के लिए आते हैं जो नीचे रेस्टोरेंट है ऊपर बैठने की जगह बनाई गई है इसे ऊपर से सजाया गया है डोर लगाई गई है और ये नीचे पंखा लटक रहा है।